छोटे-छोटे टाइल्स के टुकड़े है हाथ में एक में रे मास्क लिए हुए है पीछे एक बैग लटकाए हुआ है।

दुकान दे रहे है दिख रहे है ये एन.डी.एफ.सी. सेण्टर है।

जो की यहां पे छोटे बच्चों का और औरतों के लिए सामान मिलता है दुकान के सामने एक बाइक लगी हुई है दुकान के अंदर --

साइकिल पर एक युवक बैठे हुए है एक साइकिल से युवक जा रहा है मंदिर के बगल से।

हम देख रहे है किस बार का तस्बीर है जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान है चट्टान के ऊपर हरी हरी झाडयां लगी हुई है जो की बहोत छोटी छोटी है|